एक भाई साब बाइक पे खड़े रह के फोन पे बात कर रहे है वहां पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है इधर पेड़ पौधे एक ध्वजा लगी हुई है।

यहां पर एक जाली का खिड़की बना हुआ है और उसमें पलक लगे हुए हैं कुछ तो अखबार पड़े हैं।

कलर किया हुआ है। इसके अंदर एक कुलर रखा हुआ है।

यहां सामने पे एक ब्लू कलर की दीवार बनी हुई है और एक सफेद बोर्ड लगा हुआ है और एक बड़ा सा गेट है बोर्ड पे गिरधर मोटर्स नाम लिखा हुआ है।

दीवार बनी हुई है और उस दीवार में एक गेट है और एक विंडो लगा हुआ है और इस दीवार में ऊपर छत में लाइट --

और यहां पे दो बड़ी मेजे टेबल है और टेबल पे पानी के पीने की बॉटल रखी हुई है और सब ऊपर छत में --

जिसमें कुल एक म मूर्ति रखी हुई है और छत में पंखे लगे हुए है यहां प्रवेश द्वार पे एक घंटी लगाई हुई है।

यह एक करणी माता के मंदिर के फोटो है जिसमें गुलाबी कलर एवं बीच में सफेद ऊपर फिर गुलाबी कलर के --

प पक्षियों के लिए खाने का दाना डाल रखा है और वहां पीछे पेड़ भी दि दिख रहे हैं एक बड़ा सा यहां पे टाउर लगा हुआ है।

लकरी का फर्नीचर से बॉक्स बने हुए हैं अलग अलग स्थानो में--

लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं बैठने के लिए--

यहां पे एक दीवार है जो बैंगनी कलर की है उसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं।

और छत व्हाइट कलर की है उसमें चित्रकारी की हुई है और उसमें से पंखे लगे हुए हैं और यहां पर पिलर हैं जो ब्लैक कलर के हैं बीच में सफेद --

पानी की टंकी रखी हुई है तीन चार और उधर दूर काफी ब बड़े सारे पेड़ दिख रहे हैं।

नीचे ये बिल्डिंग के ऊपर ऊपर रेड कलर है नीचे बीच में वाइट कलर है और नीचे भी पानी की बड़ी बड़ी टंकी रखी हुई है।